एक कुत्ता दिखाई दे रहा है यहां पे दो डॉक्टर्स खड़े हैं।

यहां पे बहोत सारे पेड़ पौधे है यहाँ पे एक गोल चक्का बना है।

यहां पे एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है जहां पे पोस्टर लगे हुए हैं टाइल्स लगे हुए हैं काले रंग के।

जो रंग बिरंगी है यहां पे चर्च का निशान बना है सफेद रंग का।

लाल रंग की धारी बनी हुई है लाल रंग का गेट है जो लोहे का बना हुआ है।